ये कोई सैलून की हमें फोटो दिख रही है। जहां पर हमें तीन चार कांच दिखाई दे रहे है और हमें यहां पे ब्लैक कलर की तीन चार चेयर भी दिख रही --

व्हाइट कलर का फर्श दिखाई दे रहा है गेट का कांच लगा हुआ है जो कि एक कांच खुला हुआ है एक--

आ हमें यहां पर सामने बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पे लिखा है संतोक सिंग गोविंद सिंग और हमें नीचे चार पांच आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

दिख रहा है। बहोत शारे बच्चे यहाँ पर हमें एक के पीछे एक खड़े हुए दिख रहे है जो की चप्पल पहने हुए है और दूर--

दे रही है एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है और पीछे हमें खनों में बहुत सारे दुकान के सामान दिखाई दे रहे हैं हार्पिक की बॉटलर --

यहां पर हमें बहुत शारे झंडे लग--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

जहां पर हमें एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर की शर्ट पहने और ब्लैक कलर का पैंट पहने और उसकी चप्पल भी हमें--

जो टैक्टर खड़े हुए दिख रहें हैं जोकि ब्लू कलर के हैं रेड कलर के हैं।

अभी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर हमें तार--

फूल लगे हुए दिख रहे हैं। एक वाइट कलर का एक रेड कलर का एक ऑरेंज कलर का एक लकड़ी कलर का एक ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर के में मोती जैसी डिज़ाइन --

येह कोई हॉस्पिटल की फोटो हैं जहां पर अस्पताल के बेड रखे हुए हमें दिख--

जो वो दिख रहे है एक बाके बिहारी के हमें फोटो भी ऊपर लगी हुई दिख रही है बहुत सारे आदमी दिख रहे है और यहां पर रेड और व्हाइट कलर के हमें बलून ल--

दोनों लोग इक इक हात से पंछी पकड़े हुए हैं और दोनों को बहोत शारी मालाये--

ग्रीनरी दिख रही है और हमें बीच में एक घास टाइप की दिख रही है खाई टाइप की और हमें बहोत दूर बहोत बड़े बड़े पहाड़ से दि--

लगे भी दिख रहे हैं और वो हुए दीवार पे दिख रहे--

जो एक आदमी व्हाइट कलर की टी_शर्ट ब्लू कलर का पैंट पहने हुए है।

यहां पर हमें बहुत सारे लटके हुए कुछ कुशां--

कुछ लैंप अलग प्रकार के हैं कुछ लैंप अलग प्रकार के हैं कुछ लैंप छोटे हैं कुछ लैंप बड़े हैं कुछ लैंप ब्लैक हैं।

यहां पर हमें एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जो ब्लू कलर की शर्ट और येलो कलर का जीन्स पहने हुए--

वे यहां पर दिखाई दे रहा है एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का पंखा लगा है।

दिख रही है जोकि ऊपर से रखी हुई है।